झाड़ दिख रहा है नीम का हरे पत्ते दिख रहे हैं नीचे ईंटे दिख रही हैं दो सीढ़ियां दिख रही है हरा चक्र दिख रहा है।

जो रुको हुए दिख रहे है एस.बी.आई. कार्ड लिखा हुआ दिख रहा है ऊपर एल.इ.डी लाइट दिख रहे है छत पर।

पैकेट रखे हुये है कुछ अ चिप्स के पैकेट दिख रहे है कुछ बिस्कुट के पैकेट दिख रहे है कुछ डब्बे दिख रहे है कुछ --